पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है ऊपर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है स्कूल का कलर --

सड़क बहुत ही साफ और सुन्दर दिखाई दे रहा है पीछे बादल भी बहुत अच्छा है।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

जिस पे टाटा मोटर्स ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बोहोत ही बड़ा सा महल वाइट कलर का दिख रहा हैं बोहोत ही सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है।

बहुत ही शानदार एवं सुंदर तस्वीर दिखाई दे रहे है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है आसमान भी बहोत ही साफ दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है आसमान भी बहोत ही साफ दिखाई दे रहा है।

इस पर नीले कलर से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आपका--

पीछे आसमान भी बहोत ही साफ एवं सुंदर है।

पीछे आसमान भी बहुत ही साफ एवं सुंदर दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे भी अनेकों प्रकार के दिखाई दे रहे है।

सारा पानी इधर-उधर फैल गया है।

सारा पानी इधर-उधर फैल गया है।

खाना का प्लेट लिए हुए खड़ा है जिसमें प्याज भी डाला हुआ दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर से कलर किया हुआ है बहोत ही साफ तस्वीर दिखाई दे रही है सफाई का बहुत ही अच्छा विशेष ध्यान है।

बहुत ही शानदार तस्वीर है आसमान भी बहुत ही साफ है।

बहुत ही साफ-सफाई का अच्छा व्यवस्था हैं।

बोहोत ही शानदार व्यवस्था दिखाई दे रही है एक लाल कलर का टी -शर्ट पेहने हुए आदमी अंदर आ रहा हैं।

यहाँ पे कोई भी आके जिम कर सकता है।

यहाँ पे कोई भी आके जिम कर सकता है।